ओ कोई क्लोथ की शॉप है इंग माइन अंडरवियर है अलग-अलग भांत का अंडरवियर है अलग-अलग साइज़ का है।

इमे बहुत आई.टी.आई. का कोई सेंटर है सेंटर के मायने वैल्डिंग वगेरह सिखा रेया है दो गुरूजी खड़या है।

और ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लागेड़ो है एक नार्मल फैन भी है सामने कांच ए लाल रंग की कुर्सियां है और स्विच बोर्ड है सामने ब्लू कलर की तार है।

देखो ए राधा और कृष्ण की मूर्ति है और फूल लागेडा है चारो मेर और फूला क चारो मेर एक माला भी है एक पीला रंग की।

और ऊपर क्रॉस का निशान मनेड़ो है ज़का को ऊपर लाल रंग के एलेडी ऊ डिजाइन करेड़ी है और नीचे लाल और ग्रीन की ईंट चर्च बनायेडो है चर्च का आगे नीला और सफ़ेद रंग का गुब्बारा ऊ डिज़ाइन करेडी है।

ओ एक कोई मछली बज़ार है मछली बाज़ार के मायने मछली तीन चार बांथ की मछलियाँ पड़ी है बेच बा खातिर लाल रंग को त्रिपाल है त्रिपाल के ऊपर मछलियाँ है और एक अंटी है जीके मछलियाँ बेच री है।

ओबी कोई एक बोहत बडो मेलो है और मेला के मायने टेंट लागरिया है व्हाइट कलर का और रेड कलर का और क्रीम कलर का टेंट लागेडा और वा शिटी भी बोहोत बडी है।

ग्रीन कलर की नीचे घास है और साइड में दो पेड़ है एक नीम को है और एक दुसरो है और लारे लोह की ग्रील लागेडी है।

और सामने पेंसिल का डब्बा है पेन का डब्बा है ग्रीन कलर की टेप पड़ी है और अ लग अलग भांत का प्रोडक्ट है फेविकोल का डब्बा पडिया है और ए कॉपी किताब का सामान पडियो है और साफ सुधरी जगह है।

और एक जखी काला रंग की तार जा रही है मंदिर के ऊपर ऊ नीले रंग को टेन सो लागेडो है आग ऊ मुदेड़ो है और बीच के माइन तावडा के माइन दो चार कई पांच छ जाना खड़ा है।

आ एक कॉफ़ी शेप कॉफ़ी शॉप है कॉफ़ी को नाम कोथास कॉफ़ी है और उन्निस्सो उन पचास में सुरु हुई और कन्नड भासा के माइन इको नाम लिखेड़ो है इग्लिश में भी लिखेड़ो है लेफ्ट साइड में।